मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक रेलवे स्टेशन दिखाई जिसमें दिखाई दे सामने की ओर --

मुझे इस फोटो में सामने एक माल बना हुआ दिखाई जैसे मॉल में ऊपर तेल की सीसीयां रखी है नीचे को पारले जी के पैके--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारे चॉकलेट रखे हुए दिखाई दे रहे दीवाल ने--

दीवालें नीले रंग की दीवालें पुती हुई दिखाई दे रही लोहे की अलमारियां बनी हुई हैं जिसमें दो बाल्टी के साइज की रखी सामने दो भगवान की मूर्तियां रखी हुई--

हरे भरे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने कोई नदी बनी हुई दिखाई दे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा--

सामने की ओर कई सारे इंसान बैठे हुए दिखाई दे रहे जो कि कुर्सियां खाली--

कई सारे लोहे एक ही साइड खंभे गड़े है जिसमें ऊपर कि ओर वायरिंग कि हुई दिखाई दे रही है आजू बाजू की सड़क--

एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे री के साथ शीशे कांच लगाए गए ब्लैक कलर की कांच वांच लगे दिखाई दे रहे हैं ऊपर की ओर इतने सारे--

पट्टियां वाइट कलर से पुती हुई दिखाई दे रही और नीचे ब्लैक कलर की टाइल्स आइल्स लगी दिखाई दे रही--

सामने की ओर केवल एक बेंच है एक भगवान की मूर्ति रखी दिखाई दे रही है आजू-बाजू सारे गमले में रखे दिखाई कई सारे लेडिस और जेंट्स खड़े दिखाई दे सामने की ओर --

थाने पर एक ए_सी लगी हुई दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की बैनर लगी हुई है।

हरे-भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दो दो दो व्हाइट कलर के घर पुते हुए दिखाई दे सब के सब वाइट कलर के पुते हुए दिखाई दे --